यहाँ पे प एकदम हरा-हरा धान लगल है एकदम हरियर लग रहा है यहाँ पे जो एक --

खेत में डांटा गाड़ल है उसमे बोरा ओढावल है।

यहाँ पे देखिएगा कितना मस्त लग रहा है फिर भी देख सकते है कितना अच्छा है।

कितना अच्छा रोड हैरोड पे एकदम पकी यहां पे पकी रोड गया हुआ है।

यहाँ पे इतना सुन्दर नजारा है देखने के लिए भी बाइक लगा हुआ है यहाँ पे सब कोई --

लेकिन ये तो मंदिर नहीं है है तो घर ही।